मंदिर पूरा सफेद कलर का है आगे -पीछे सफेद पर्दे लगे हुए हैं।

बहोत बड़ी झांकी निकल रही है झांकी पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

एक चर्च है जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है एक अंकल सॉन्ग गा रहे हैं।

आस-पास बहुत सारे खाली खेत पड़े हुए हैं बड़े - बड़े पेड़ लगे हुए हैं लाइट के खंबे है।

एक अंकल खड़े हुए हैं जिन्होंने लाल शर्ट पहनी हुई है।

जिम है जिम में बहुत सारी मशीनस रखी हुई है मशीन काले कलर है।

कैफे के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है।

एक मैदान है मैदान में एक साइकिल खड़ी हुई है।

शादी का हाल है जिसे बहुत अच्छे से सजाया गया है।

सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है एक रोड डम रोड गया हुआ है जिसके दोनों तरफ सफेद कलर की पट्टियाँ हैं।

कार मैकेनिक की शॉप है यहाँ पर वाइट कलर की कार को रिपेयर किया जा रहा है ।

इसे फूलों से सजाया हुआ है नीचे की तरफ कुछ प्रिंटेड डिजाइनस है।

एक बहुत बड़ा पत्थर है पत्थर के ऊपर एक मूर्ति की डिजाइन बनाई हुई है।

फ्रेम अलग - अलग कलर की है नीचे स्टैंड बना हुआ है बैठने के लिए --

यहाँ पर डांस का प्रोग्राम चल रहा है।

बगल में नंदी की मूर्ति बनी हुई रखी हुई है।

बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं अलग-अलग कटिंगस के डिजाइन के--

बांध के ऊपर छोटे-छोटे खंबे लगे हुए है।